कितना ब्युटीफुल बिल्डिंग हैं कलर कॉम्बिनेशन भी कितना है डार्क ब्राउन और लाइट व्हाइट रंग किया हुआ हैं।

और दूर-दूर से तो पेड़ भी अच्छे से दिख रहा है और सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है सारी किरन किरने अच्छी दिख रही हैं।

देखो इस पीक में बढ़िया सा रगड़ा पेटिस बनाया हुआ है देखते ही हमें भी मुँह में पानी आ जाता है प्याज कटे हुए हैं टमाटर कटे हुए है आ फिर आ वो चने का सेव है सब मिक्स करके अच्छे से सब --